इस इमेज में दो लोग दिख रहे है जिन्होंने रंग -बिरंगे कपड़े पहने है और वो लोग हाथ में भाला ले के खड़े है उन लोगों के पी --

इसके सामने खड़े हुए है यहाँ पे लोगों के बहुत सारी भिड़े है इसमें बहुत सारे फूलों के हार दिख रही है पीछे बिजली का खम्भा दिख रहा है जिसके चारों तरफ से बिजली की लाइने जा रही हैं ।

ऊपर छत में एक ब्लैक कलर का है पंखा लगा हुआ है सामने ब्राउन कलर के तीन शटरें लगे हुए है शटर के उस साइड भी कुछ ब्लू कलर टेबलें रखी हैं ।

चारों तरफ सर्किट ही सर्किट लगी हुई है इस बिल्डिंगो में काँच की खिड़कियाँ लगी --

--और गेट के लेफ्ट और राइट साइड दो वाइट कलर के दो बड़े-बड़े खंभे लगे हुए है राइट साइड में घर बना हुआ भी दिख रहा है।

ऊपर लोहे के पाइप दिख रहे है बहुत सारी मशीने दिख रही है इसके लेफ्ट साइड में भी एक रेलिंग दिख रही --

ये इमेज एक लेक का है जिसके अंदर पानी भरा हुआ दिख रहा है जोकि वाइट कलर का है इस लेक के चारों तरफ बड़े-बड़े पत्थर लगे हुए दिख रहे हैं ।

--और कुछ खिड़कियाँ भी लगी है नीचे वाइट कलर का फ्लोर है इसके लेफ्ट साइड में भी खिड़कियाँ है सामने एक खिड़की खुली है जिसे बहुत तेज रोशनी आ रही है।

जिनके बीच में एक ई-रिक्शा खड़ा हुआ है जिसके ऊपर येलो कलर की छत है नीचे फ्लोर दिख रहा है जोकि लकड़ी कलर का है पीछे एक दीवार दिखी जिसके ऊपर एक बलफ लगा हुआ हैं ।

मेन वुमन करके भी लिखा हुआ है इसमें एक वाइट कलर शर्ट पहन--

टेबल के ऊपर टिश्यू पेपर और कुछ चम्मचे रखी है टेबल के उपर एक मेनू कार्ड भी रखा है टेबल के पीछे--

ये इमेज एक स्कूल के गैलरी की है जिनमे कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहै है इन्होने अपने ड्राइंग का समान एक बेंच के उपर रखा हुआ हैं।

लेडीज भी आ रही है रोड के राइट साइड में एक बड़ी- सी बिल्डिंग दिख रही है रोड लेफ्ट साइड में कुछ पेड़ लगे हुए है रोड के पीछे --

जिसमें ग्रीन कलर की घास है इसके बीच में एक पाइप रखा हुआ हैं ।

इसके अंदर बहुत सारी कारे खड़ी है जो सर्किटों से सजा हुआ है इसके बाहर भी वाइट कलर की कारे खड़ी है।

गेट के पीछे के साइड में बड़ा -सा पेड़ भी है लेफ्ट साइड में भी कुछ पेड़ है लेकिन छोटे-छोटे दिख रहे है सामने कुछ-कुछ छोटी-छोटी झाड़ियाँ भी दिख रही हैं ।

इस इमेज में एक पेड़ दिख रहा है जिसके चारो तरफ चबूतरा बना हुआ है और इसके चारो तरफ पानी भरा हुआ हुआ है।

इस पेड़ के पीछे के साइड में एक घर भी बना है जो की ल--

--बड़ा खंभा लगा है उसके चारो तरफ कुछ घर बने है और कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है उसके सामने एक साइकिल भी दिख रही है।

कुछ ऊपर खंभे लगे हुए दिख रहे है और उनके ऊपर तारे --

छोटे से गुलदस्तें भी लगे है स्टेचू के आगे और पीछे की साइड में बिजली की तारे भी जा रही है स्टेचू के सामने एक ब्लू कलर की --

बहुत सारी जिनकी सामान रखे हुए दिख रहै है उसके सामने तीन खिड़कियां लगी है इनमे एक ब्रेंच भी दिख रही है ट्राय शेप मशीन भी रखी है।